है जगह यहां आगे लगभग पांच छह बाइक एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है जो एक्ससाइज़ कर रहे हैं।

कैटरिंग के लिए स्टाल लगा हुआ है।

यह एक शॉप है जिसमें--

यह एक डॉक्टर का रूम है।

सर्जरी की मशीन रखे हुए हैं एक डॉक्टर या--

जहां पे बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है एक आदमी जा रहा है जो हाथ में--

जहां बहुत सारे बच्चे--